यह एक सरकारी जिला सूचना कार्यालय है।

मस्जिद के पास एक छप्पर वाला घर भी है।

यहाँ रात को खंभे पर लाइटें जल रही हैं।

में दो आदमी खड़े हुए हैं | एक आदमी के हाथ में यहाँ पट्टी भी बंधी हुई है |

यह एक जिम है | जिम में बोहत सारी मशीनें रखी हुई हैं |

यहाँ घर बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पर रेत भी पड़ा हुआ है घर के पास खेत भी --

जो अभी बन रही है बिल्डिंग के पास बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है |

यहा एक बाइक भी खड़ी हुई है और एक ठेला भी खड़ा हु --

यहाँ पर टीन की छत है। सामने दुकानें हैं। दुकानों के सामने --

यहाँ लोग ईट और सरिये से घर बना रहे हैं |